बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जहाँ से बहुत सी लेडीज हैं | कुछ नहाते हुए दिखाई दे रही हैं और कुछ खड़ी हैं ।

कुछ व्यक्ति के ए फ़ो पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लड़की के पोस्टर भी हैं और इसमें पाउडर के डब्बे भी दिख रहे हैं और पानी की बाटल भी दिख रही है और कंगी --

साइड मे कुछ पान का टपरा नजर आ रहा है बाजू मे एक बिजली का खंभा भी गड़ा हुआ है और धूप निकली हुई है ये दिन का समय है।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

यह नीचे में कुछ आईने लगाए गए हैं और ऊपर मे सीलिंग फैन भी लगे हुए हैं और दुगो लाइट भी जलते हुए नजर आ रहे हैं और नीचे मे दो-तीन शीशे भी दिख रहे हैं और--

यहाँ कुछ पत्थर की चट्टानें बड़ी बड़ी खाई जैसी दिखाई दे रही है और बाजू में झालर भी बंधी हुई है।

इसमे एक लकड़ी का बेंच अ रखा हुआ है और साइड मे दो हरे-भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और आसमान दिख रहा है ये दिन का समय है।